कुरकुरे और बहोत सारे समान वहां कुछ औरतें और आदमी--

बहुत सारे घर और हरे हरे पौधे दिखाई दे रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं जिसमें बहुत सारे खिड़की निकली हुई है।

बिल्डिंग व्हाइट कलर से कलर किया गया है और बालकनी के यहां से बहुत अच्छा नजारा दिख रहा है।

बिक रही है वहां एक आदमी बैठकर अपने राखी को बेच रहा है उसके पास में एक इसकुटी भी खड़ी है।

में एक दरवाजा खुला हुआ है सामने से और उसके बगल में एक--

वहां पर एक आदमी रिक्शा लेकर खड़ा दिखाई दे रहा है।

सस्पेंन बॉटल बहुत से चीजें भी--